द्वार पर लाल झंडे भी दिखाई दे रहे हैं पानी की टंकी भी दिखाई दे रही हैं।

एक सामने से बड़ा गेट नजर आ रहा है गेट के अंदर बसे रखी हुईं हैं बिजली के खंबे लगे हुए हैं।

बिजली भी दिख रही है दरवाजे भी दिख रहे खिड़कियां भी दिख रही है।